वह मग भी नजर आ रहा होगा एंड आपको पानी का टैंक दिख रहा होगा उसके बगल में कुर्सी भी नजर आ रहा होगा ऊपर आपको बैलून भी दिख रहा --

एक दो पानी का टैंक नजर आ रहा होगा एण्ड आपको पॉट में फ्लावर नजर आ रहा होगा एण्ड आप देख सकते है आपके सामने एक लेडिज जा रही है जिसने साड़ी पेहनी हुई है एण्ड आपके सामने एक हेलमेट भी रखा हुआ है हेलमेट के बगल मे एक साड़ी --